साफ नजर आ रहा है वे दोनों सेल्फी ले रहे एक में लाल कलर की शर्ट --

और दूसरे ने सफेद कलर की बुसेट पहनी हुई है और उनके पीछे पानी से भरा तालाब भी है।

बस दिखाई दे रहा है और यह मुझे सांप की आकृति का कुछ दिखाई दे रहा है।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

थी अत्यंत सुशोभित नजर आ रहा है इसके बाहर काफी सारी गाड़ियां भी खड़ी हुई है।

टीचर उनकी उनपे कड़ी निखरानी भी रखे हुए हैं ताकि बच्चे एग्जाम मे चीटिंग ना कर पाये बच्चे लकड़ी की बेंच पर बैठे हुए है।

और खुला आसमान भी नजर आ रहा है जिसके नीचे की ओर एक माताजी की पूजा की जा रही है और काफी लोगों की भीड़ है।

पीने के लिए पानी की हरे कलर की बोतल व पैड्स सैनिटरी पैड्स अंडा प्लेट्स इत्यादि दिए गए हैं जिसके अंदर --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

और मंदिर श्री कृष्णा जी का है मंदिर की इमारतों का उत्पन्न पत्रो द्वारा किया गया है और मंदिर काफ़ी साफ सुथरा भी है।

और खुला आसमान नज़र आ रहा है और चारों ओर पेड़ पौधे ल से घिरे हुए हैं।

फन किंगडम जयपुर की सबसे घूमने के लिए सबसे एक विशिष्ट व प्रचलित जगह है।

इस तस्वीर मे मुझे एक आदित्य हॉस्पिटल नज़र आ रहा है जिसकी बिल्डिंग का रंग सफेद रंग का है।

तस्वीर का नजारा नजर आ रहा है जिसमें काफी सारी बिल्डिंग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के कंस्ट्रक्शन के पेज नजर आ रहे --

भूरे रंग की साड़ी व गुलाबी रंग का ब्लाउज पहना हुआ है और वेह गेहूं साफ करती हुई नजर आ रही है।